यहां तालाब में दो बत्तख दिखाई दे रही हैं आसपास बहोत सारा पानी है।

बहोत सारे लोग भी बाहर खड़े हैं।

सामने स्टॉल पर बोतलें रखी हुई हैं।

ये एक छोटा सा मंदिर है सामने एक दान पात्र भी रखा हुआ है छत पर लाइट लगी--

पोस्टर और बोर्ड लगे हुए हैं दीवार पर बहोत सारे--

और पीछे डब्बे पड़े हुए हैं।

ये एक लकड़ी का सोफा सा बना हुआ है।